दिखाए गए दृश्य में एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है।

प्रस्तुत छवि में एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर स्टील के बहोत सारे खंबे रखे गए हैं।

उसका साइन और मोबाइल नंबर भी दिया गया है।

एक साइन बोर्ड भी दिख रहा है जिसमें एक आर_एम_डी लिखा हुआ है वह साइन बोर्ड नीला रंग का है।

दिखाये गये दृश्य में एक बड़ा सा कमरा दिखाया गया है।

एक व्यक्ति अपने हाथों में झूला लेकर कहीं जा रहा है उसने एक लूंगी भी पानी हुई है।

एक पुजारी भी दिखाई दे रहा है।

जेल का पानी हरा है एवं बहोत ज्यादा शांत भीं नजर आ रहा है।

रोड के किनारे बहोत सारे दुकान भी दिख रहे हैं।

आस पास बहोत से सजावट के सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

कमरे में एक छोटा सा चेयर भी है और उसे तौलि की मदद से ढका गया है।

हॉल में बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

नदी का पानी हरे रंग का है एवं बहुत ही शांत है।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

कुछ दूरी पर उस किनारे एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है जो देखने में काफी खूबसूरत है।

शीशे के पास बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं फूल गुलाब के हैं।

अलमारीयों में बहुत सारा कार्टून रखा गया है और कार्टून में अलग अलग सामान रखे गए हैं।

आलू देखने में बहुत सारा ही ताजे हैं।

इमारत सफेद रंग का है एवं उसपे एक बड़ा सा साइन बोर्ड टंगा हुआ है जिसपर होंडा लिखा गया है।

कपड़े देखने में काफी खूबसूरत है।

वाहनों का रंग सफेद एवम काला है एक वाहन को परदे से ढका गया है।

हॉल में बहुत सारी कुर्सी एवं टेबल भी दिखाई दे रहा है।

हाल में सफेद रंग की लाइटें भी जल रही है।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

एक सोफा सेट कुछ सोफा है एवं एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के पास एक दो पहिया वाहन भी लगा हुआ है।

प्रस्तुत छवि में एक बड़ा सा इमारत दिखाया गया है।

आस पास बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

हॉल को कर्कटों के मदद से बनाया गया है।

बहोत सारी बड़ी बड़ी मोतियां भी दिखाई दे रही है।

कमरे को बैगनी एवं सफेद रंगो से रंगा गया है।

प्रस्तुत छवि में बहुत सारी बांसे दिखाई गई है।

टेंट देखने में बहोत ही छोटे हैं और रंग बिरंगे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।